इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिन्होंने ग्रे और येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

पीछे की ओर कई सारे खंभे लगे दिखाई दे रहे है।

यह एक बैंग का दुकान है।

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां एक पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग हरा है।

सामने स्टेज के नीचे फर्श का रंग उजाला दिखाई पड़ रहा है।

इसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बगीचे का चित्र है जिसमें कई सारे फूल लगे दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है।

यह पहाड़ किनारे का दृश्य है।

साइड में ही पहाड़ लगा दिखाई दे रहा है।

यह एक शोरूम का दृश्य है।

इस दृश्य में एक दुकान दिखाई पड़ रहा है।

नीचे ही फर्श पे बहुत बड़ा लगा दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिखाई दे रहा--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

नीचे ही एक कार्टून रखा हुआ है जिसका रंग ब्राउन है।